यहाँ पर ट्रेडमिल है साइकिल है और डंबल्स भी रखे हुए हैं।

जहां पे काफी सारा कूड़ा और काफी लोहे की सरिया रखी हैं।

पीछे के बेंच का कलर नीला रंग का है।

और यहाँ पे ए.टी.एम. भी है | उसके ऊपर के बिल्डिंग पे लाल रंग की पट्टी है और गिलास की खिड़कियां हैं |

यहां पर कुछ ई रिक्शास खड़े है।

पानी पे रोशनी पड़ रही है।

काले और सफेद रंग का जेब्रा भी है।